रखे हुए हैं ड्री बेंचेस डली हुई है।

ये सभी दौड़ रहे हैं यहां पर एक कंपटीशन चल रहा--

इस पिक्चर में एक जगह दिखाई दे रही है जिस पर मीका दा ढाबा लिखा हुआ है।